और अद्भुत नजारा पहाड़ो का देख रहा है। बोहोत ऊँचे पर बैठा हुआ है और देख --

एक प्रोग्राम में स्टेज पर भगवान जी की मूर्तियां रखी हुई हैं । शेरावाली मां की मूर्ति है ।

एक दुकानदार है। दुकान में राखियां बिक रही हैं रक्षाबंधन के त्योहार पर।

मुँह पर सभी ने मास्क लगा रखे हैं।

वेशभूषाऐ पहन रखी हैं और एक लेडिज भी खड़ी हुई हैं मार्किट में--

जिस पर बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। वह मस्ती कर रहे हैं। एक व्यक्ति छोटे-छोटे बच्चों को खिला रहा है। कुछ बच्चे नीचे घूम रहे हैं।

और वह भगवान जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा है वह पूजा कर रहा है।

एक छत पर काम चल रहा है। दो मिस्त्री हैं। वे अपना-अपना काम कर रहे हैं। वे छत को बना रहें हैं।

में मोटर साइकिलें व स्कूटी खड़ी हुई है व पेड़ हरे रंग के लगे हुए हैं बिल्डिंग लाल रंग की व सफ़ेद रंग की है।

एक स्टेज पर एक कार्यक्रम चल रहा है जिसमे बहुत से लोग धोता कुर्ती पहने हुए हैं ओ --